पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है सामने कुछ चेयर भी लगे हुए है और नीचे हरी भरी दुआ भी दिखाई दे--

--और ऊपर आसमान ब्लैक कलर मे दिखाई दे रहा है और जंगल मे पेड़ पोधे भी काले दिखाई दे रहे--